बहुत अच्छा नजारा है और उधर एक आदमी बैठा है। उधर बहुत सारे आदमी हैं और ऊपर में बहुत सारे लाइट लगा है।

ऊधर पास में सादा कलर का दो ठो घर है इधर भी घर है और पूरा मिट्टी है।

एक दुकान है जिसमे बहुत सारे सामान रखा हुआ हैं।

और ये दुकान बहुत पुराना है और यहां साइकिल गाड़ी भी बनता है।

और इधर सामने पेड़ है बहुत सारे पेड़ हैं सामने में पहाड़ भी है।

ग्राउंड हरा भरा है इधर सामने में एक पेड़ है उधर भी है पेड़।

और बढ़िया से हरा भरा वृक्ष गाछ है।

और ढेर सारे बच्चा है जो कुर्सी पर बैठा है।

और जिम का पूरा समान है और एक आदमी यहाँ पर जिम कर रहा है उधर भी पूरा आदमी है।

लाइट लगाया हुआ है फिर ऊपर में भी झालर टाइप मे फुल सजाया हुआ है।

उधर पुतले को कपड़ा पहना के खड़ा कर दिया है।

इधर सामने में छोटा छोटा पेड़ है और एक बड़ा भी पेड़ है इधर बगल में और बहुत अच्छा है दुकान और उस दुकान के बगल में बहुत बड़ा और घर है।

उधर सामने उधर दूर में भी एक पेड़ है जो कि पूरा हरा भरा है।

एक चर्च है जो की बहोत बड़ा है और यहां पर बहोत आदमी है।

यह एक मंदिर का दृश्य है।

और यहां पर एक आंटी खड़ी है।

और यहां पर एक बहुत बड़ा घर है और घर के बगल में छोटा छोटा पेड़ है।

यहां पर एक आदमी है जो छावनी के पास ठहरा हुआ है और यहां का चीजें बहुत अच्छे हैं।